गांव में बहुत सारे गाय बंधे हुए हैं।

बहुत बड़ा ग्राउंड है यहां पे एक बड़ा सा नीम का पेड़ है उस पे सीढ़ी लगी हुई है।

इसमें बहुत सारे सामान दिख रहे हैं जैसे मैगी चाऊमीन ।

बहोत सारी पेड़ भी हरे भरे दिखाई दे रहे है।

ये मस्जिद के अंदर में लाइट भी जल रहे हैं और बड़े बड़े खिड़कियां और दरवाजे हैं।

एक गॉर्डन में सोलर कुकर लगा हुआ है।

यह चित्र किसी जिम का है इस जिम में बड़े बड़े मशीन लगी हुई है कुछ काले रंग की है तथा कुछ लाल रंग की है।

बहोत सारी खिड़की भी दिखाई दे रही है।

एक व्यक्ति व्हाइट कलर का शर्ट और ब्लू कलर का पेंट पहना हुआ है और हाथ में मोबाइल लिया हुआ है।

मेमोरियल का जो दीवाल है वह रेड और येलो कलर से पेंट किया हुआ है।

चारों ओर बाउंड्री किया हुआ है बड़ा सा ग्राउंड भी है और बड़ा बड़ा प्लांट्स है।

बॉक्स रखा है और ये दोनों का जो कवर है ओ ब्लैक कलर का है।

और टेबल पर ग्रीन कलर का मैट बिछा हुआ है।

ऊपर में दो लाइट लगे हुए हैं टेबल के ऊपर में।

और काउंटर में एक एक ट्यूबलाइट है पंखे भी है।

दूसरे काउंटर पे दो लेडिस खड़े हैं स्टॉल ओढ़े हुए हैं।

यह दृश्य किसी रूम का है इस रूम में तीन बेड लगे हुए हैं।

छत पे एक झंडा है और इस बिल्डिंग के चारों ओर पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

और बहुत बड़े बड़े वृक्ष भी हैं।

आर येलो कलर का कार है पिंक कलर का खिलौना है।

छोटे छोटे घास लगे हुए प्रोग्राम में और जगह जगह पे बैठने की व्यवस्था की गई है।

फर्स्ट बिल्डिंग में अम कपड़े सुखाए हुए हैं।

चट्टान पे एक लड़की खड़ी है जो ब्लू कलर का जींस और रेड कलर टॉप पहनी हुई है।

इस कॉम्प्लेक्स में ग्लास लगे हुए हैं।

दीवाल पे भी डेकोरेट प्लाई से ही किया गया है जगह जगह पे लाइट जल रहा है।